ये फुटवियर है और वो जहां बैठा है वहीं पे एक बड़ा सा फाउंटेन है जिससे पानी का फवारा --

कुछ यहाँ पे सीनरी लगी हुई है और इस सीनरी में आदमी का चित्र भी अंकित है।

और बांस के भी नदी पे कुछ कुछ लगे हुए हैं | सामने में बादल नीला और सफेद है |

सामने जो दुकानें हैं उनके शटर अभी बंद है |

और जिसके ऊपर एक मम लिखा हुआ है आयकर विभाग।

ए.सी. लगी हुई है और पहली मंजिल पे कुछ आदमी है जो सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं और कुछ आदमी सीढ़ी के नीचे भी खड़े हैं।

यहां पे छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है।

उसने एक रॉड को पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ उसके जेब में है और उसके ऊपर शेड लगा हुआ है।